दुकान में कांच का दरवाजा लगाया हुआ है और अंदर अल्युमिनियम की बनी --

बहुत सारे गाड़ियां लिए हुए--

यहां पे गुटका चुटकी चुपा चुप और मैगी के पाउचेस रैक में रखे हुए दिखाई दे रहे --

यहां दो बच्चियां हाथों में मोमबत्ती लिए दिखाई दे रही है।

कुछ युवतियाँ कुर्सियां लगाए हुए बै --